और यहां पे बहुत भीड़ होती हैं।

ये जंगल बहुत घना भी हैं।

और यहाँ पे बहोत सारे लोग जाते हैं।

ये एक सूट का दुकान है।